सिंडर मे लाइट लगा हुआ दिखाई दे रहा है जोकी गुलाबी कलर का नजर आ रह है और हमे यहाँ पर बहोत सारे रंग बिरंगे लाइट दिखाई दे रहा है कुछ लाइट का कलर हमे यह नीला दिखाई दे रहा है कुछ लाइट का कलर हमे सफेद दिखाई दे रहा है।

के अंदर हमें बोहोत सारी खिड़कियाँ लगी हुई नजर आ रही है साथ ही साथ हमें यहाँ पर बहुत सारे पाइप लगे हुए नजर आ रहे है जोकि सफेद कलर के दिखाई दे रहे और हमें यहाँ पर एक कार दिखाई दे रही है कार का कलर हमें यहाँ पर सफेद दिखाई --

हमें एक बहोत ही बड़ी मशीन दिखाई दे रही है मशीन में हमें यहाँ पर बहोत सारा सामान रखा हुआ नज़र आ रहा है मशीन यहाँ पे किसी काम करते हुए नज़र आ रही है और हमें यहाँ पर बहोत सारे वायर लटके हुए दिखाई दे रहे है वायर हमें बहुत दूर दूर तक जाते हुए नज़र आ रहे है।

पर एक बोहोत ही बड़ा पूल दिखाई दे रहा है पूल हमें पानी से डूबा हुआ डूबा हुआ नजर आ रहा है और हमें यहाँ पर एक बोहोत ही बड़ी नदी दिखाई दे रही है नदी मे हमें बोहोत सारा पानी दिखाई दे रहा है।